लेडीज है आर्मी है काफी लोग हैं।

इस लड़के के पीछे जो है डंबल्स दिखाई दे रहे हैं पीले रंग का --

जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़का जो है --

खुली हुई दिखाई दे रही है और --

और उसके सामने एक ए.टी.एम. है और एक एक्सिस बैंक की इमेज जो हैं --

बोट शो नजर आ रही है और इसमें --

यह समुद्र के बीच से ली गई एक --

के फंक्शन की फोटो है।

एक आदमी ने अपने कान पे फोन लगाया हुआ है।

और फोटो खिचवा रही हूँ।

और सामने काफी सारी पेन --

काफी सारी चॉकलेट से जो है टॉपिंग की गई है।

और मेरा फेवरेट चॉकलेट केक भी है।

हमको दिखाई दे रहा है कि एक फील्ड में काफी सारे --

और ये जो आदमी है वो एक रेड कलर की पेन जो है दे रहा है।

कम्पटीशन जो है रखा गया है।

छह आदमी जो है सैलोन के बाहर नजर आ रहे हैं और --

यह इमेज एक स्कूल की दिखाई दे रही है ज-जो

प्रतिमा भी लगाई गई है और यहाँ दो बाइक खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

की दिखाई दे रही है जो इसमें --

दो आदमी जो है एक --